लाइट बत्ती भी बर रहा है।

एक लड़का खड़ा है ऊपर में।

बगल मैं बहुत सा सामान भी पड़ा हुआ है जिम सेंटर का उसके बगल में कई लड़का है।

टाइप का रखा हुआ है।

बगल साइड में दो घर है।

दो वाइट कलर का फोर व्हीलर बाहर में लगा हुआ है।

फील्ड में बहुत सारा आदमी है।